एह किसी पंडल के अंदर में कोई इ लेडी आइटम का प्रदर्शन लगा हुआ दिख रही है या बिंदी--

आ दुकान बहुत ही आकर्षिक लग रहा है टिन शेड के वजह से कुछ जगह अच्छा ओ दिख रहे कुछ जगह सूरज दिख रही है अंदर में कुछ सामान रखे हुए दिख रहे धन्यवाद।

यह मच्छी मच्छियों का बाजार दिख रहा है मच्छियों की यहां कई सारी दुकानें लगी हुई है यह महिला मछुआरे कुछ मच्छियों को काटते हुए और पाने में भरते हुए दिख रही है।

आजू बाजू में हरे भरे पेड़ लगे हुए दिख रहे सामने कुछ आ ऑटो स्टैंड दिख रहे कुछ बस दिख रहे कुछ लोग आते जाते हुए दिख रहे हैं बहुत ही पास एसा रोड यह दिख रहा है और चारो तरफ से रोशनी ही रोशनी दी--

भीड़ लगी हुई बुक स्टॉले की दुकान दिख रही हे बुक स्टॉले की दुकान टिन शेड से बनी हुई दिख रही है और--

काले फर्श बहुत ही पॉश और प-पोय- बिल्डिंग में यह कोरियर ऑफिस दिख रहा है कुछ लोग यहां अपने काम करते हुए दिख रहे हैं। धन्यवा--